बैट बॉल दिखाई दे रहे हैं।

इसपे रेड कलर पोता हुआ है। वाइट कलर भी पोता हुआ है। इसके ऊपर गुम्बार्ड दिखाई दे रही है गोल्डन कलर की |

उसकी छत पे वाइट कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है बाँस के डण्डे दिखाई दे रहे है।

और उसके छत पे भी वाइट पेंट पोता हुआ है।

कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं रैलिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है इसकी दीवार पे वाइट कलर पुता हुआ दिखाई दे रहा --

बालकनी दिखाई दे रही है बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं एक व्हाइट कलर की कार दिखाई दे रही है।

टेबल दिखाई दे रही है। कुर्सी दिखाई दे रही है। बोहत सारे लोग दिखाई दे रहे है। एक टी.वी. दिखाई दे रही है।

बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे खम्भा दि --

पॉलिथीन दिखाई दे रही है उसके ऊप --

की दीवारो पे वाइट पेंट पोता हुआ है उसके --

सारी लाइट्स दिखाई दे रहीं हैं इसी --

दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही --